लाल कलर का स्टैन्ड है और बहोत सारा अ दिए जल रहे हैं ग्रीन कलर का कारपेट भी है यहाँ।

नौ जने रेड कलर के शर्ट पहेन रखा है एख येल्लो कलर का शर्ट पहेन रखा है एख इधर-उधर देख रहे है एक फोन देख रहे है।

यहाँ पे एक चित्र देख सखते है यहा एक चर्च में एक फादर खड़े हुए है।

आप यहाँ एक तस्वीर देख सकते हैं यहाँ को एक स्कूल में कुछ फंक्शन चल रहा हैं उसमें ब चार लोग चार बच्चे यहाँ ड्रॉइंग कर करे हैं।

और ये आदमी अंदर जाने कि कोशिश कर रहा है।

बाइक भी बाहर खड़े हुए है लोग भी बाहर है अंदर भी है बाहर भी है लाइटिंग्स भी है और बाहर पौधे भी है।